इसमें एक डांस हो रहा है नाच रहीं हैं सभी लेडिस जो बहुत सारा अधिक संख्या में--

यहां पर गाड़ी दिख रहे हैं जो गुबाड़ा से सजे हुए हैं और कहीं शादी में जा रहे हैं।

और दुकान का नाम है सनवी किनारा स्टोर किनारा की दुकान है।